बाहर में एक-दो बाइक भी नजर आ रहे हैं।

यह एक कमरा है यहाँ पर लाइटें भी लगी हुई हैं |

काउंटर पर भूरे रंग का अम्म --

सामने में पेड़ ही नजर आ रहा है वो भी हरे-भरे हैं |

सामने में एक अलमीरा रखा हुआ है।

नीचे कुछ बेंचेस रखे गए है उस पर बैग है।

उसके पीछे ये घर दिखाई दे रहा है जो सीमेंट रंग का है।

यहाँ पे दो आदमी भी खड़े है जो एक टी-शर्ट सफ़ेद रंग का टी-शर्ट भूरे रंग का --

बोहोत सारे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है। यहाँ पे बोहोत सारे लोग भी नजर आ रहे है। कुछ साइकल्स है कुछ बाइक्स हैं भी है।

एक बच्चा गुलदस्ता बनाने का कोसिस कर रहा है। इसके हाथ मै केचि नजर आ रहा है सेलोटेप भी नजर आ रहा है।

नीचे में एक छोटा-सा गेट बना है जो काला रंग का है लोहे का है।

सामने में एक घर नज़र आ रहा है जो सफ़ेद रंग का है इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ लगी है।

यहाँ पर हम्म टेबल लाल रंग का टेबल है गुब्बारा भी सजाया गया है। यहाँ पर तीन लेडिस भी नज़र आ रही है जो साड़ी पहन रखी है।

ऊपर में करकट दिखाई दे रहा है करकट में एक सेलिंग फैन भी लगा हुआ है।

यहाँ पर एक ठो टूटा -फूटा मंदील नजर आ रहा है जो की सामने में चार-पाँच मूर्तियां नजर आ रही है।